यह एक मैरेज होम है। मैरेज होम में मैरेज वेडिंग के साथ या फिर मैरेज की जा मैरेज शादी की जाती है। शादी की रश्में पूरी की जाती हैं। शादी--